रेस्टुरेंट की सजावट बहुत ही बढ़िया है।

अंदर एक व्यक्ति खड़ा हे उसके पांच एक शीशा हे।

प्रतीत होता है और यहां पर बोहत सारे लोग बार्गेनिंग करने आए है।

दो बाइक यहाँ से जा रहें हैं।

ऐसा प्रतीत होता है की यह सर्कस है।

घर के सामने एक बरामदा है बरामदे में एक कुर्सी पड़ी हुई है।

यहाँ एक वी.आई. का गेट बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पर लगता है की --

यहाँ पर एक व्यक्ति उसके बेड पर लेटा हुआ है। उस --

काले कलर की कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं और उसके पास में पेड़ लगे हुए हैं।

यह एक प्यारा सा झरना प्रतीत होता है यहां पर पानी ऊपर से आ रहा है।

यह एक जंगल के वादियों का फोटो है।